बहोत ही सुंदर लग रहा है और सब पे लाइनिंग बनाई गई है।

और भैंसो को बांध कर रखा गया है एक भैंस बड़ी दिखाई दे रही है और दूसरी भैंस छोटी दिखाई दे रही हैं।

लाइटे जलती हुई देखी जा सकती है अगल - बगल में भी और भी बहुत सारे --

जो के सफेद रंग से पेंट किया हुआ है और इसमें बहोत सारी बांसे दिखाई दे रही है और नीला आकाश दिखाई दे रहा है और सामने सामने एक बड़ा-सा खंबा भी देखा जा सकता है ।

यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि एक पिलर के ऊपर चढ़ा हुआ है उसके दूसरी तरफ भी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ आकाश दिखाई दे रहा है अगल - बगल में कुछ पेड़ भी देखे जा सकते हैं नीचे एक कार खड़ी हुई है और रोड पे --

अगल - बगल में बहुत सारे और भी मकानें दिखाई दे रहै हैं थोड़ी ही दूर पे कुछ मकाने दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है ।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

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है सामने बहुत सारे पेन के बॉक्सेस रखे हुए है सामने एक बड़ा -सा टेबल दिखाई दे रहा है जिसके पीछे --

यहाँ पर एक बहोत बड़ा मस्त जिम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर कुछ पंखा लगे हुए है अगल-बगल में भी कुछ--

एक व्यक्ति ने चेक कलर के टी शर्ट पहन रखी हुई है।

और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहै हैं नीचे रेड कलर की एक पॉलीथिन बँधी हुई है।

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा हैजो की हाल्फ टी शर्ट एंड हाल्फ पेंट पहने हुए है और उसके पीछे एक बड़ा सा दीवाल दिखाई दे रहा है दरअसल वह कोई पेड़ भी हो सकता है।

नीचे भी कुछ चट्टानें दिखाई दे रही है अगल-बगल में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आकाश साफ तौर पे देखा जा सकता है यह देखने में अच्छा है।

ऊपर से कुछ लाइटे भी आती हुई दिखाई दे रही है यह देखने में बहोत ही सुंदर लग रही है नीचे कुछ भूमि भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक लड़का है।